यहाँ एक समुंदर है समुंदर है किनारे-किनारे पेड़ हेंगे और पूल बना हुआ है।

यहाँ पे गांव हैं गांव मे जो हैं चारों तरफ़ पेड़ हैं बीच मे पानी है।

आ लाल कलर का वो है गा आसमान नीला रेड कलर का जगल हैं इधर उधर--

पेय है यह नीचे घास है पीछे दीवाल है।

घास खा रहे है ये हरी- हरी धूप निकली हुई हैं।

बांस पकड़े हुए हैं और बैठे हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं।

यहाँ पे एक मैदान है मैदान में जो है यहाँ पे बनी हुई है बहुत सारे आदमी हैंगे।

यहाँ पे हॉल हैं दो तीन दुकाने हैं बहुत सारी कुर्सियां हैंगी।

यहाँ पे दुकान हेंगी बहुत सारे बैठे हुए है इनमे सब्जियां बिक रही है हरी रही।

यहाँ पे पहाड़ है पहाड़ के बाद बहुत दो चार आदमी खड़े हुए हैगें फोटो खींच रहे है नीले कलर का है।

और लाइटे जल रही हेंगी यह--